यह बिल्डिंग ग्रीन लैंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की बिल्डिंग है।

ओर इस बिल्डिंग के आगे एक दीवाल है।

और एक बाइक के साथ एक आदमी भी साथ में खड़ा है।

यह एक अलबेस्टर लगा हुआ राइस मिल है।